बहुत सारा खेलने का सामान रखा हुआ है यहां पर लाइट बहुत डिजाइन किया गया है।

इधर से आदमी जा रहा है इधर से आदमी आ रहा है।

बहोत सारा हरा भरा पौधा दिख रहा है फूल भी दिख रहा है।

यहां पे बहुत बड़ा खंभा दिख रहा लोहा का।

यहां पर हर धारी भी लगाया गया है।

अंदर में बहुत सारा गाड़ी भी दिख रहा है।

पीछे में गा बहुत बड़ा गाड़ी दिख रहा है।

यहां पे बहोत अच्छा डेकोरेट किया गया है यहां पे बहोत अच्छा अच्छा डिजाइनिंग लाइट लगाया गया है।

यहां पे एक छतरी दिख रहा है टी_वी का एंटीना --

जिम सेंटर है जिसमें एक आदमी जिम कर रनिंग कर रहा है।

सामने में एक आदमी इधर से आ रहा है।

यहां पे बहोत आदमी बैठा हुआ ब्रेंच पे--

यह एक गाड़ी का शोरूम है यहां पे बहुत सारा गाड़ी खड़ा है।

सामने में एक गाड़ी दिख रहा है।

यहां पे बहुत सारा झुमका भी दिख रहा है।

छोटा छोटा पौधा भी लगाया गया है।

सामने में एक बहोत बड़ा एक घर है।

यह बड़ा सा एक महल दिख रहा है।

उसके साइड में कुछ लोहा है और कुछ कपड़ा टंगा गया है तार पर।

यहां पे बहुत बालू का जगह है यहां पे बहोत सारा आदमी बैठा हुआ हैं पत्तल लेके।

बहुत सारा आदमी खड़ा है और चप्पल-जूता दिख रहा है।

यहा पे बहोत सारा पौधा दिख रहा है गमला में पौधा रखा हुआ है।

छोटा बड़ा पौधा लगाया गया है।

सामने में एक बोतल दिख रहा है।

घर के यह साइड में भी एक बड़ा सा घर है।